पर्ल में अरै फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में अरै फंक्शन्स के बारे में सीखेंगे जैसे 000011 000010 पुश पॉप shift अनशिफ्ट स्प्लिट स्प्लाइस और जोइन सोर्ट क्यू मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं गेडिट टेक्स एडिटर का उपयोग भी कर रहा हूँ
आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर और अरैज का साधारण ज्ञान होना चाहिए
कमेंट्स लूप्स और कंडिशनल स्टेटमेंट्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शन प्रदान करता है
ये फंक्शन्स अरै पर विभिन्न ऑपरेशन्स क्रियान्वित कर सकते हैं
पहले सीखते हैं कि अरै की अंतिम पॉजिशन से एलिमेंट्स को कैसे जोड़ें और हटाएँ
इसका उपयोग करके यह किया जा सकता है पुश फंक्शन जो अरै की अंतिम पॉजिशन में एक एलिमेंट जोड़ता है
और पॉप फंक्शन जो अरै की अंतिम पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटाता है
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके पुश और पॉप फंक्शन्स को समझते हैं
टर्मिनल को खोलें और टाइप करें गेडिट पर्लरे डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में पर्लरे डॉट पीएल फाइल खोलेगा
कोड को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने लेंथ 3 का अरै घोषित किया है
पुश फंक्शन इस अरै की अंतिम पॉजिशन पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा
अर्थात 3 के बाद
जबकि पॉप पंक्शन अरै की अंतिम पॉजिशन से एक एलिमेंट हटायेगा
हमारे केस में 4 अरै से हट जायेगा
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
पुश फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
पुश फंक्शन में पहला आर्गुमेंट अरै है जिसमें एक एलिमेंट जोडना है
दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है जिसे अरै में पुश करना है
पॉप फंक्शन का सिंटेक्स निम्न है पॉप फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है
यह अरै है जिससे एक एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है
ध्यान दें ये दोनों फंक्शन अरै की अंतिम पॉजिशन पर कार्य करते हैं
पॉप फंक्शन द्वारा हटाया गया एलिमेंट अन्य वेरिएबल में संग्रहित किया जा सकता है
इसके लिए सिंटेक्स है variable स्पेस स्पेस पॉप ओपन ब्रैकेट myArray क्लोज ब्रैकेट
अब टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल पर्लरे डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब देखते हैं कि अरै के पहले पॉजिशन से एक एलिमेंट को कैसे जोड़े और हटाएँ
इसे अनशिफ्ट फंक्शन का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है जो अरै में पहली पॉजिशन पर एक एलिमेंट को जोड़ता है
Shift फंक्शन जो अरै से पहले एलिमेंट को हटाता है
इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
मैं पर्लरे डॉट पीएल फाइल खोलूँगा जिसे मैने पहले ही बनाया है
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
अनशिफ्ट फंक्शन पहली पॉजिशऩ पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा अर्थात 1 के पहले
shift फंक्शऩ पहली पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटायेगा
हमारे केस में जीरो हटेगा
फाइल सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
अनशिफ्ट फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
पहला आर्गुमेंट अरै है जिसमें एक एलिमेंट जुडता है
दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है जो अरै में जुड़ता है
shift फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है
यह अरै है जिसमें से एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है
ध्यान दें ये दोनों फंक्शन अरै की पहली पॉजिशन पर कार्य करते हैं
हम कुछ वेरिएबल में shift फंक्शन द्वारा हटाये गये एलिमेंट को संग्रहित कर सकते हैं
सिंटेक्स यह है variable स्पेस स्पेस shift ओपन ब्रैकेट myArray क्लोज ब्रैकेट फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल पर्लरे डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर प्रदर्शित आउटपुट चिन्हांकित है
अब देखते हैं कि अरै की विशिष्ट पॉजिशन से एलिमेंट को कैसे हटाएँ स्प्लाइस फंक्शन अरै की विशिष्ट पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटाता है
इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हटाये गये एलिमेंट्स का एक अरै है
अब इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
पर्लरे डॉट पीएल फाइल पर जाएँ जिसे हमने पहले बनाया है
कोड का भाग टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
हमें इंडेक्स प्रदान करने की आवश्यकता है जहाँ से हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं और जहाँ तक हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं
हमारे केस में एलिमेंट्स 5 और 6 हटेगा
तो टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल पर्लरे डॉट पीएल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब अरैज के कुछ अन्य इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं
स्प्लिट फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट डिलिमीटर पर स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए किया जाता है
इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अरै है
इस अरै के एलिमेंट्स स्ट्रिंग की विभाजित भाग हैं
जोइन फक्शऩ निर्दिष्ट डिलिमीटर का उपयोग करके अरै के एलिमेंट्स को जोडता है
ये जुडे हुए एलिमेंट्स का स्ट्रिंग रिटर्न करता है
सोर्ट फंक्शन वर्णात्मकसंख्यात्मक क्रम में अरै को क्रमबद्ध करता है
क्यू फंक्शन वाइट स्पेस द्वारा पृथक शब्दों के अरै को रिटर्न करता है
अब इन सभी फंक्शन्स को सेम्पल प्रोग्राम को उपयोग करके समझते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट अरेफंक्शंस डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
इस केस में वेरिएबल स्टिंग का प्रत्येक शब्द अरै का एक एलिमेंट बन जाएगा
यहाँ न्यूवारे का प्रत्येक एलिमेंट कॉमा द्वारा जुड़ा होगा
सोर्ट फंक्शऩ अरै के एलिमेंट्स को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा
क्यू फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै बनाता है
प्रत्येक फंक्शन को समझते हैं
स्प्लिट फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है
पहला आर्गुमेंट डिलिमीटर है जिससे स्ट्रिंग को विभाजित करने की आवश्यकता है
दूसरा स्ट्रिंग है जिसे विभाजित करने की आवश्यकता है
डिलिमीटर्स फॉरवर्ड स्लेश सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं
जोइन फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
पहला डिलिमीटर है जिससे अरै एलिमेंट्स को जोडने की आवश्यकता है
दूसरा अरै है
डिलिमीटर्स सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं
सोर्ट फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है जो अरै है जिसे क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है
क्यू फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै रिटर्न करता है
यह जरूरी नहीं है कि शब्दों को कोट्स में निर्दिष्ट किया जाय यदि लिखते समय क्यू का उपयोग कर रहे हैं
फिर टर्मिलन पर जाएँ और पर्ल अरेफंक्शंस डॉट पीएल का उपयोग करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
स्क्रीन पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमनें सीखा अरै से एलिमेंट्स को जोडनाहटाना बुनियादि फंक्शन्स जिन्हें सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै पर क्रियान्वित किया जा सकता है
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
scriptspoken tutorialorgindexphpपर्ल डिलिमीटर पर उपर्युक्त स्ट्रिंग को विभाजित करें
नये अरै के शुरुआत में https जोडें
अरै से एलिमेंट पर्ल को हटाएँ
नंबर अरै घोषित करें और क्रमबद्ध करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है